बाइक्स दिखाई दे रही हैं बैंच दिखाई दे रही हैं उसपे एक मेट दिखाई दे रही और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहा हैं एक बैनर दिखाई दे रहा हैं।

लोग दिखाई दे रहे हैं बहोत सारे फ्लैग दिखाई दे रहे हैं नाव का कलर स्काई ब्लू दिखाई दे रहा एक रस्सी दिखाई दे रही ग्रीन कलर की पॉलिथीन दिखाई दे रही आसमान में पर्पल स्काई ब्लू और ग्रीन ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा हैं।

सारे लॉग्स दिखाई दे रहे है यहाँ पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पर्पल पिंक कलर दिखाई दे रहा है दीवाल पे व्हाइट और जमुनी कलर दिखाई दे रहा है ये प्लग पर ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा हैं और कुछ पेड़ दिखाई दे रहे काँच दिखाई दे रहा हैं बैनर दिखाई दे रहा हैं अंदर बहोत सारा सामान दिखाई दे रहा हैं रेड कलर दिखाई दे रहा हैं ब्लैक कलर दिखाई दे रहा हैं।

और भी बोहोत कुछ दिखाई दे रहा है। पत्थर्स दिखाई दे रहा है। एक व्यक्ति ने पिंक कलर की शर्ट पहने हुए--

दिखाई दे रही है उसके हाथ में पाइप दिखाई दे रहा है स्काई ब्लू कलर की जैकेट पहिनी हुए। फिर बिल्डिंग्स दिखाई दे रही है जिनपे ग्रीन और ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है। बहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिस ने पर्पल कलर की शर्ट पहनी हुई है उसके गले मे एक रुमाल बंधा हुवा-- यहा पर बहुत सारे पीपे दिखाई दे रहे है और भी बहुत सारा सामान दिखाई दे रहे-- नीचे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ऊपर भी ग्रीन और ग्रे कलर दिखाई दे रहा --